हमे यहाँ पर बहुत सारी इनके हाथो मे कॉपीज दिख रहे हमे यहाँ पर माइक्स दिख रहे हमे यहाँ पर कुर्सिया भी दिख रही है हमे यहाँ पर दीवालों का कलर जो है सफ़ेद है।

अह पानी भी दिखाई दे रहा है यहा पर हमे खिड्किया भी दिखाई दे रही है छोटी-छोटी गमले भी दिखाई दे रहे है हरी हरी पौधे भी दिखाई दे रहे है नीला आसमान दिखाई --

यहा पर हमे एक पार्क दिख रहा है यहा पर हमे एक डायनासोर दिख रहा है और यहा पे कुछ बॉक्सस भी रखे हुए कुछ पेड़ भी हमे यहा दिख रहे है।

इनमे हमे खिड़कियां भी दिख रही है और साथ ही साथ हमे नीले कलर का आसमान भी दिख रहा है।

और हमे यहा पर बहुत सारे बलून्स भी दिख रहे जो की पीला पिंक कलर के यहा पर काँच दिख रहे कुछ लोग यहा पर दाढ़ी बनाते दिख रहे।